यहाँ एक किले की दीवारों का चित्र दिखाया जा रहा हैं ।

की गई है रंग-बिरंगे पन्नियों से सजावट की गई है।